यहां काफी साफ सफाई रखा गया है।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

नीचे एक रास्ता निकाला हुआ है और बहुत सारी गाड़ियां भी यहां खड़ी दिखाई दे रही है।

बिजली का खंभा भी यहां नजर आ रहा है।

यह देखने से काफी स्वादिष्ट लग रहा है।

यहां एक दुकान दिखाई दे रहा है यहां कुछ बल्बें भी लगाई गई है।

दो बोरे में कुछ रखी हुई है।

यहां बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं जिनमें एक में हुंडई एक में कश्यप डेंटल क्लिनिक भी लिखा गया है।

सामने एक कांच का दरवाजा भी लगा हुआ है।

यहां एक रास्ता निकाला हुआ है और एक आदमी दिख रही है।

यहां कांच के दरवाजे के अंदर बहुत सारी शेरवानी रखी हुई है यह काफी सुंदर लग रही है।

सामने एक ट्रेडमिल भी लगा हुआ है।

यहां बहुत सारे रंग बिरंगे बल्बे जल रही है।

यहां काफी सजाया हुआ दिख रहा है।

इसे चारों ओर से बांस से घेरा गया है।

यह एक रास्ता का दृश्य दिखाई दे रहा है।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

यहां एक रास्ता भी निकला हुआ है।

यहां बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं।

बानसूर की किडनी भी नजर आ रही है।

यहां हेल्थ प्वाइंट हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

यह दिन का समय प्रतीत हो रही है।

पीछे बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं।

यहां बाहर में बहुत सारी बोरिया में समान रखी हुई है जैसे पिस्ता चिप्स सोयाबीन दाल चना गुड़ राई रखी हुई है।

यहां बहुत सारी टेबल एवं कुर्सियां भी लगाई गई है।

यह देखने से काफी स्वादिष्ट लग रहा है।